यहां चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हैं बीच में कुछ झूला सा बना हुआ है लकड़ी का व कुछ--

साइड में कुछ हरे हरे पेड़ पौधे हैं रोड पर लोग चलते हुए जा रहे हैं एक व्यक्ती ने कंधे पर बैग टंगा हुआ है और एक छतरी भी है लाल और--

यहाँ दुकान के ऊपर कुछ शैंपू के अलग-अलग पोउच लटके हुए हैं कुछ डव शैंपू के हैं कुछ क्लीनिक प्लस के हैं।

यहां पर बहुत सारी बाईके खड़ी हुई हैं।

पीछे की तरफ एक कोका कोला का फ्रिज भी रखा हुआ है उसके अंदर भी सामान है।